जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं यह एटीएम है जो कि यूनियन बैंक का है। यहां पर एक आदमी बाहर की तरफ और ये गेट भी सजा है शायद यह न्यू ओपन हुआ है और साथ में एक लड़का भी खड़ा है जोकि वेट कर रहा है।

फिर गाड़ी कि तरह अपनी फ़ोटो फ़ोटो खिचवा रहा है पीछे की तरफ एक लड़का जो शीशे की तरफ और जिम में काफी सारे सा इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं जो कि पीछे वाला भी यूज़ कर रहा है।

दिख रहे हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं और पीछे कि तरफ एक झील नज़र आ रही है ऊपर एक पुल है।

इसके पंची इसके हाथ में है और वो लेडीज़ भी देख रही है उसके अन्दर क्या है पता नही चल पारा या तो ये स्कूल है।

पीछे की तरफ व्यू का एक अ व्यू की फोटो सेल्फी की थ्रू --

देखिए हम देख रहे है यहाँ पर कंट्रक्शन का काम चल रहा है जो कि नया-नया घरा घर एक करा गया है यहाँ पे दो आदमी बैठे है जो शायद मिस्त्री या नौकर कारीगर जो कि काम करते होंगे यहाँ पर पीछे एक घर है। --